बहोत सारे टाइल्स साइड पर लगाया गया है।

ये जंगल बहुत सुंदर है।

मेज पर तीन आदमी काम कर रहे हैं।

वेस्टर्न टॉयलेट भी दिखाई मिल रहा है।

इस इमेज में आपको एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई मिल रहा है।

बहोत सारे वायर कनेक्टेड हैं।

आसमान भी सफेद है फ्लोर में पानी भी नजर आ रहा है साइड में --

इस बारबर का टी शर्ट कलर सफेद है बहुत सारे चीज साइड में रखा गया है।

चौकी पर एक दो औरत हैं फीस भी एकदम ताजा है।

और कारपेट भी लगाया गया है फ्लावर पॉट भी है दो।

इसमें से दो आदमी का लॉन्ग पेंट नीला कलर है।

और इसके आगे में एक गर्त भी है।

फ्लावर पॉट भी एक नजर आ रहा है और यह बंबू का बनाया गया है।

एक लड़का लड़की का बैग को तलाश रहा है।

और कुछ बलूंस भी टंगाया गया है बहुत सुंदर से सजाया गया है।